उपर से कुछ लोग नहा रहे है।

दुकाने बनी है लक्ष्मण दास तोलाराम थोक वस्त्र विक्रेता।

एंड बैनर भी लगे हुएं हैं उपर भी दुकानें हैं वाइट कलर से पेंट है।

इसमें ईस्टेज लगा हुआ है।

उपर लाइटे इंग लगी हुई है।

एंड साइड में भी बैंक है। बैनर लगा हुआ है।

पास में एक वाइट कलर की चेयर रखी हुई है और बहोत सारे भी चेयर रखे है।